ये ये दुकान एक किराना दुकान है जहाँ यह यहाँ हर चीज मिलने का सम्भव है यहाँ हम लोग जो चीज का कमी होता है उसको ले जाने के लिए दुकान जाते हैं और कार्य के लिए लेकर आते हैं दुकान से समान का आवश्यकता होता है--

कापी दुकान है यहाँ मतलब कॉफी कॉफी दुकान है यहाँ पुस्तक कापी और जो चीज की जरूरत है वहाँ मतलब जो चीज बेकार है वो सब मिलता है यहाँ कॉफ़ी दुकान के है जो चीज जरूरत है वह यहाँ पर जो कार्य कर सकते है वहाँ हमारे लिए आवश्कता होती है।